आ यह बहुत सारी सीडिया बनी हुई है नीछे जमीन पे पर्श पत्थर के दिख रहे है और ये बहुत पुराना लग रहा है और पीछे की तरफ बड़ा पीडी लगा हुआ है।

ये सोफा काले रंग का है और नीचे इसके मशीन दिख रही है प्लग लगा हुआ है। ऊपर की तरफ फूल देख रहे हैं और साइड में डेस्क दिख रहे है।

नीचे की तरफ एक मेज दिख रहा है जिसमें बहुत सारे पेन रखे हुए हैं।

ये चित्र मे एक सड़क नजर आ रही है अ उम् और काफी सारी बिल्डिंगे है उम और इसपर पोस्टर लगे हुए है।

उम एक काले रंग की कर सड़क पे से जा रही है और दूर एक रीक्शा खड़ा हुआ है और दुकानो के सामने बहुत सारी मोटर साइकिल खड़ी हुई है।

एक नाई की दुकान दिख रही है दीवार पर बहुत सारे शीशे है। शैंपू और पाउडर भी रखे हुए हैं।

चित्र एक अ पुराने छोटे से तालाब कि दिख रही है जिसमे हंस खड़े हुए हैं एक हंस पानी मे खड़ा है और पीछे जमीन पर खड़े है।